बहुत सारी महिलाएं अपनी सेवाएं देती हुई दिखाई दे रही है।

और महिलाएं बहुत सारा काम करती दिखाई दे रहीं है।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

सारी महिलाएं अपनी सेवाएं देती हुई दिखाई दे रही है।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

तस्वीर में बहुत सारी महिलाएं अपनी सेवाएं देती हुई दिखाई दे रही है।

सारी महिलाएं एपनी सेवायें देती हुई दिखाई दे रहीं हैं।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

महिलाएं उसमें फोटो खींचाती दिखाई दे रही हैं।